और नीला आसमान दिखाई दे रहा है.

दे रही है एक कुत्ता सोया हुआ है.

यह एक कमरा दिखाई दे रहा है.

बहुत बड़ी खिड़की दिखाई दे रही है खिड़की पर शीशा लगा हुआ है.

बिल्डिंग का कलर ब्लैक और व्हाइट है।

यहां एक गाड़ी पार्क की हुई है।

यहां कुछ सामान रखा हुआ है.

एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिस पर एक बड़ा पोस्टर लगा हुआ है.

बादलों से भरा हुआ है एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है.

यह एक कमरा है जहां पर एक बेड दिखाया गया है.

एक बड़ा पोस्टर लगा हुआ है पीछे एक शीशा दिख रहा है.

यह एक गार्डन दिखाई दे रहा है। यहां पर--

एक दे रहा है कुछ हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

नीला आसमान दिखाई दे रहा है दो टंकी दिखाई दे रही है।

फर्श पर टाइल्स लगी हुई है.

यह एक ब्यूटी पार्लर दिखाई दे रहा है जहां पर--

यहां पर बहुत सारी लाइट्स लगी हुई है.

पानी की टैंकी दिखाई--

बास्केट बॉल की पिच दिखाई दे रही है.

यह एक टॉय शॉप है जहां पर बहुत से टॉयज रखे हुए हैं.

सभी के मुंह में ब्लर दिखाई दे रहा है.

कुछ पत्थर दिखाई दे रहे हैं पीछे एक पत्थरों का चट्टान दिखाई दे रहा--

यहां धरती बहुत सारा समान बिखरा पड़ा हुआ है।